यहां पर फूल दिखाई दे रहे हैं हाथ दिखाई दे रहा है पीले कलर का फिरोजी कलर का हरे कलर का--

गेट में लाल कलर का डिजाइन है।

पिंक कलर की शर्ट पहना है काले कलर की पैंट पहना है ब्राउन कलर का घर नज़र आ रहा है।

सफेद और काले कलर का ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है सफेद कलर की दीवारें हैं।